ये नीचे बहोत सारा गाड़ी का सामान रखा हुआ है। यहां पर एक जेन्ट्स लेटा हुआ है।

और जो बहोत ग्रीन -ग्रीन कलर के दिख रहे हैं और यहां पर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है। ऊपर आसमान है जो पूरा ग्रे कलर का है।

और यलो ओरेंज और ब्लू कलर में है और ये क्रैट में बहुत सारे दूध के पैकेट रखे हुए हैं और यहाँ पर एक रूम बना हुआ है जो रूम की दीवाल का कलर पूरा वाईट कलर है।

इधर एक ग्राउंड बना हुआ है। ग्राउंड के किनारे एक नदी बनी हुई है जिसमें बहुत साफ पानी दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में बहुत भीड़ लगी हुई है। ग्राउंड में घास भी उगी हुए है। यहाँ साइड में बहुत सरे पत्थर पड़े हुए है। ऊपर आसमान है जो की लाइट स्काई ब्लू कलर का है।